जिसमें अपन उसकी जो बनावट है उसको देख सकते हैं।

इसमें लोगों को इसके अच्छी अच्छी अच्छाइयों का बताया जा रहा है।

जो वहां पे चीजों का पता लगाने के लिए जा रहा हो वहां पे अन्दर जाने की जगह भी है।

तो ये किसी के द्वारा बनाई गई है किसी जानवर के द्वारा या किसी चीज के द्वारा --

हो सकता है इसमें उन्हें सब टाइटल के लिए नाईस डे करके एक चीज़ लिखी हुई है मार्केटिंग के हिसाब से।

नीले कलर के गुब्बारों से इसको सजाया गया है यह एक इंडियन भारतीय स्थान का एक फंक्शन है।

शायद एक समान तरीके से उसकी जमीन को बनाया जा रहा है।

घास भी है और फसल के तरीके से उसे बनाया रखा है उन्हें ।

और यहां पे कुल्हड़ में तंदूरी चाय का दिया जाता है वहां पर नीचे कचड़ा रखने के लिए भी बनाया गया है।

किसी तरीके की ब्लेड या पंखी हैं जो कामों में उपयोग आ सकती हैं जो किसी कारखानों की फोटो हैं।

एक बैंक जहां पर अलग अलग काउंटर बने हुएं हैं लोग अपने अपने कामों के हिसाब से वहां पर--

बहोत सुंदर तरीके से उनको सजाया गया है उनके सिंगार को बताया है।

और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी है और ये एक हॉस्पिटल का कमरा है।

और अपने अपने सामान का उपयोग करके अपने अपने तरीके से अलग अलग चीजों को बना रहे हैं।

एक स्टेशन के गेट के बाहर की फोटो है।

जो लाल और पीले से कलर में पोती हुई है।

और अच्छे तरीके से इसे सजाया गया है इसकी लाइट बहोत अच्छा तरीके से लुक दे रही हैं।

एक काले पत्थर का कारखाना जहां पर भंडार किया गया है।

और अच्छे से वो परफेक्ट तरीके से व्यवस्थित हो जाए इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है।

एक कराटे क्लास जहां पर बच्चे कराटे सीख रहे हैं और कई छात्र यहां पर--